फ्लावर है ऑरेंज कलर के फ्लावर हैं।

एक कबर्ड पड़ा हुआ है एक पिलर है।

यहां पे एक बंगला है ग्रीन कलर का--

ऊपर पीछे साइड में ब्लैक अंधेरा दिख रहा है।

उसके आगे दिवाली के छोटे-छोटे--

एक औरत बैठी हुई है दो चार लड़कियां खड़ी हुई हैं।

ये एक मुझे चर्च का बाहर का ग्राउंड का दिख रहा है गार्डन --

पोस्ट पॉइंट लिखा हुआ है एक रेड कलर का पोस्टर है नीचे--

सामने बिल्डिंग्स से दिख रही हैं एक बोर्ड बना हुआ है।

और डिजाइन वाली दीवार है एक लड़का--

स्टेशन है ऊपर अग्निशामक बोर्ड लगा हुआ है।

इसमें ब्राउन कलर का नीचे का फ्लोर है।

बहुत सारी लाइट हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।

उसने लाइंस वाली टी-शर्ट पहन रखी है।

नीचे पानी है समुंदर है ब्लू कलर का पानी है।

सोफा पे ब्लैक कलर के लड़की बैठी बात कर रही है।

दूसरी साइड भी एक टेबल है वो कुछ लिख रहे हैं।

चिड़िया का एक घोसला बना हुआ है ब्लैक कलर का--

कोई है नहीं एक ब्राउन कलर का मॉल है।

पार्किंग करते हैं कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं कुछ झाड़ियां बनी हुई हैं।

गुब्बारों का वाइट और रेड कलर से डेकोरेट किया हुआ है।

ये रोड पर बहुत सारे दुकान से हैं।

नीचे बहुत छोटे-छोटे खाने बने हुए हैं।

उर्दू में कुछ पोस्टर में लिखा हुआ है।

ये एक दुकान मुझे दिख रही है--

पे मिथिला बुक सेंटर लिखा हुआ है।

रेड कलर की शर्ट पड़ी है ब्लॅक कलर की पँट पड़ी है।

ये वेज एंड नॉनवेज वेजिटेरियन होटल है।

कुछ पटरियां दिख रही हैं लंबी-लंबी।

ये एक गाँव का दृश्य है।

एक आदमी टोकरी में सामान ले जा रहा है।

बड़ी बस काले कलर की दिख रही है।

कोच लगा हुआ है स्लीपर कोच लिखा हुआ है।

मिठाई शोकॅश में पड़ी हुई है।

पीछे लकड़ी से बांस से बंधा हुआ है।